ये एक बस स्टैंड है यहाँ पे काफी सारी बसे खड़ी हुई हैं काफी सारे लोग है जो बसों में जा रहे है आ रहे है।

इस इमेज में सामने के तरफ एक बिल्डिंग दिख रही है जो कि एक स्कूल का रोल प्ले कर रही है। स --

इस इमेज में आपको बेक साइड में दो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है पिंक कलर की उन्ही के पीछे काफी बड़े-बड़े पेड़स का भी व्यू आ रहा है।

और एक गार्डन शो हो रहा है जिसमे काफी सारे लोग खड़े हुए हैं एक पोल के पास और उसी पोल के आस-पास काफी सारे येलो और रेड कलर के फ्लावर्स भी फैले हुए हैं।